इसमें ग्रीन हार्ट और साइडों में लगे --

इस मंदिर के ऊपर तीन चित्र बने हैं।

कुछ कागज के बॉक्स भी रखे हुए हैं।